यही से हम प्रणाम करता हूँ दुर्गा माँ को ।

बहुत ही अच्छा देखिये इसमें कितना मतलब की --

और ये बहुत बढ़िया कॉलेज है। जमुई का एक नंबर कॉलेज --

और ये एकतालिस वर्ष का हो गया लगता है।

ठीक है। कुछ सामान लो फोन पे मार दो। अगर क --

और यहाँ पे विभिन्न प्रकार का सैलून में आखिर --

और यहाँ पे इर्द गिर्द इसका लगता है मम्मी वगैरह --

वो भी डेकोरेट कर रहे हैं आंटी साफ सफाई कर रही है।

ये एक फैमिली झूट है लग रहा इसी तरह --

काफी कड़ी धुप भी और --